मुझे यहां पर एक रास्ता दिखाइ दे रहा है सीधा और एक गाड़ी की हल कि सी झलक नजर आ रही है दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने गम --

मुझे यहाँ पर एक होल सा मैंदान दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ एक इमामबाड़ा सा बना हुआ है। यहाँ पर बोहोत सारे --

जो गुंबद है इमामबाड़े का वह उम्म सुनेहरे रंग में दिखाई दे रहा है और ऊपर सफेद रंग की लाइटे जल --

वो जो स्ट्रेज जो सजा हुआ है वो लाल और हरे रंग की लाइटे भी जल रही हैं और अंदर की तरफ भी बहोत सारी लाइटिंग --

अ जो ऊपर का छिलका है कुछ हरा उसका पार्ट दिखा दे रहा है कुछ हल्का पीला दिखाई दे रहा है कुछ भूरे रंग के --

आ घांस दिखाई दे रहे हैं जमीन पर।

झालर की तरह बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं लाइटे भी जल रही है। रंग-बिरंगे फूलों का रंग है।

ऊपर की तरफ लोहे की छड़े बनाई है ये --

यहां पर एक बोटल भी रखा गया है पानी का।

अर् मेज टाइप का बना है जोकि हर रंग से पेंट है। यहाँ ट्रे की तरह कुछ रखा गया उसी के अंदर मशीन है।

कांच के दरवाजे लगे हुए हैं और काउंटर पर एक आदमी खड़ा हुआ है और मुंह में शायद मास्क लगा हुए है।

सीमेंटेड और ईंट के बने हुए पिलरस् से हैं। जिसपे --

यहाँ पर मुझे एक चबूतरे की तरह गोल सर्कल का बनाया हुआ वो दिख रहा जिसमें पानी भी भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे --

और जानवर बतक की तरह बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने --

टूट को पीछे किया हुआ है और कुछ गुलाबी और सफेद रंग मे नजर आ रहे हैं | कुछ पेड़ भी है और कुछ --

मुझे प यहां पर बहुत सारी जिम की मशीने लगी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर।

गेरुआ दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रही हे जमीन का रंग गेरुआ --

कुछ गुलाबी रंग के कुछ अम्म लाल रंग के कुछ पीले रंग के लगे हुए हैं। उनके पत्ते हरे हरे दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी का चक्का दिखाई दे रहा हैं; नीचे जमीन दिखाई दे रही हैं जिसमें --

बिजली के तारे गई है ऊपर का आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग कुछ हल्का गुलाबी कुछ आसमानी --

बना हुआ सा दिखाई दे रहा है। जिसमें गेट भी बना हुआ है। गेट खुला हैयहाँ पर लिखा हुआ है रू होना।

आयरन को नीले रंग से पेंट भी किया गया है। यहाँ पे ट्रायंगल की शैप का भी उसने चित्र बना दिखाई दे रहा हे ऊपर की तरफ --

यहाँ पर एक मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी औरतें नकाब में --

और एक आदमी से हाथ मिला रहा है जिसने काले रंग की जैकेट पहन रखी है। ऊपर की तरफ यहाँ गोल सर्कल में --

मुझे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं किनारे किनारे से मैंडम भी नीली साड़ी पहने हुई खड़ी हुई हैं।

यहाँ पर एक सीधा मैंदान सा रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पर एक म्म बिल्डिंग सा बना हुआ है और यहाँ पर हरे रंग से कुछ लिखा भी गया है पोस्टर पर।

हा नजर आ रहा है मुझे यहां परयहां पर सीधी एक दीवार भी नजर आ रही है। दीवार को पीले रंग से पेंट भी किया --

यह एक बरामदा दिखाई दे रहा है। इस पर सीड़िया भी लगाई हुई है और यहाँ पर लोहे की --

आ तना दिखाई दे रहा है मुझे और उसे पे पत्ते चढ़े हुए हैं हरे रंग के।

किनारे-किनारे भी बहोत सारे पत्तेदार पेड़ है और ओ कुछ बड़े-बड़े से पेड़ हैं।

यहां पर कुछ दुकाने दिखाई दे रही हैं और सामने की तरफ मिट्टी की खुदाई हुई है। मिट्टी का रंग कुछ गुलाबी और गेरुआ हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

सफेद रंग का जैकेट नीले रंग की जीन्स औ जूता पहन रखा है। सर में टोपी भी लगा रखा है। पानी का --

आ यहां पर सुर में रंग का हो रखा है जैसे ब्लर काली तरह दिखाई दे रहा है और यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। पेड़ की कुछ टहनीयाँ --

बीच में गेट है छोटा गेट भी लगा हुआ है जो कि खुला हुआ है और तार बिजली के ऊपर से गई हैं। कुछ पेड़ --

और यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे दिख दिखाई दे रहे है जो के लोहे की बेंचस पर कुछ पेपर कुछ अ --

मुझे यहां पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है और अ जिसको पत्थर का बनाया गया है। औरत की मूर्ति है। औरत के --